जब ये काफी अ स्मार्ट बन जाते हैं यहाँ के जिम में। जिम बहुत अच्छा है और विशिंग स्टार्ट डूइंग करके ऐसे करके है। काफ़ी बॉडी बिल्डर भी है। यहाँ फ़ोटो इसको --

गमला और ये सब बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया है। देखने से मन करता है की अपने भी घर में इस प्रकार का कुछ वृक्षारोपण किया जाए।